जैसे कि मैं यहाँ देख रही हूँ ये एक चर्च है और यहाँ पर बहुत सारे --

अ पिस्टा ग्रीन कलर में पेंट किया गया हुआ है और बाहिर दो-तीन पौधे लगाए गए हुए हैं पॉट में --

और एक आदमी अंदर चल के जा रहा है और बाजू एक शटर भी है।

और उस लाल रंग की किताब पर पिले कलर के स्टिकर्स लगाए हुए हैं।

और पीछे बहोत सारे पोस्टर्स भी लगाए है और एक काली चेयर भी है।

जैसे कि मैं यहाँ देख रही हूं ये एक कटिंग शॉप है और एक लड़का ब्लू चेक शर्ट में एक आदमी को सेविंग कर रहा है और इनके सामने --

लगाए गए हुए हैं और इसके अतराफ में पूरा हरिया-सा चारा डाला गया हुआ है और इसके पीछे एक बिल्डिंग है उसका रंग तोतिया --

जैसे कि यहाँ पर देख रही हूँ ये एक मदन बुक स्टॉल है और यहाँ पर दो आदमी खड़े हुए हैं एक आदमी --

जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ यहाँ पर एक मेला लगा हुआ है और इसके ऊपर बहुत बड़ा-सा बोर्ड लगाया गया हुआ है।

जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ ये एक मैदान है और यहाँ पर बहुत सारे जंगली झाड़ लगे हुए हैं।

और यहाँ पर ये खिलौन खेल बच्चों को खेलने के लिए एक झोला भी लगाया गया है और यहाँ पर एक स्टील पाइप का वो भी एक झूला लगा --

मच्छों को क्लीन कर रहे हैं और एक आदमी खड़ा हुआ है येलो कलर चेक्स वाला शहट शर्ट पेहन --

जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ ये एक छोटा-सा --

जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ ये एक रेलवे ट्रैक है और यहाँ पर एक ब्लू कलर सी ट्रेन जा रही है और उसके --

और बहुत सारे आदमी लोग चलकर जा रहे हैं और यहाँ पर एक ट्रीन भी खड़ी है जो लाल और सीमेंट रंग में है।

जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ यहाँ पर बहुत सारे कारें खड़े गए हुई हैं और यहाँ पर दो-चार पुलिस भी खड़े हुए हैं।

जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ यहाँ पर बहुत सारे फूलों के माला लगाए गए हुए हैं जैसे कि सफेद रंग में लाल रंग में और --

जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ ये एक रेलवे स्टेशन है जहाँ पर इधर से उधर को प्लेटफॉर्म चेंज करते हैं।

सजाया गया हुआ है और यहाँ पर लाइट्स भी येलो कलर लाइट्स में सममति लिखा है और ग्लास के अंदर दो गुड़ियों --

जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ ये एक मार्केट का रोड है जहाँ पर एक आदमी खड़ा है जो मुँह में ब्रश कर रहा है।

सफेद और लाल रंग से पेंट किया गया हुआ है और इस मंदिर के बाहर --

जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ये एक कटिंग शॉप है और एक लड़का जो कटिंग कर रहा है वो सफेद --

जैसे की मैं यहाँ पर देख पा रही हूं ये एक बड़ी सी --

जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ये एक बस स्टॉप है जिसमें दो बसें खड़ी हुई हैं और एक बस जो है --

फुल ग्लास भी ग्लास की बस है और उस ग्लासेज में पीले और हरे रंग का पर्दा लगा --